बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह एक ड्रई क्लिर्नस की शॉप है।

काले अ कलर का तार है एक |

यह एक मैरेज होम का गेट है।

जहाँ पे डाइनिंग टेबल एवं लाल कलर की चेयर रखी हैं।

यह एक खाली जगह है जहाँ पर की एक बस खड़ी हुई है।

एक स्कूटी और मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

जहाँ पर अलग-अलग कलर के झंडे टंगे हुए हैं।

नीचे कुछ हले हरे कलर के ज़मीन है।

जहां पर एक व्यक्ति पेट्रोल डलवा रहा है।

कुछ पेड़-पौधे हैं जो की कुछ सूखे हैं कुछ हरे हैं |

ऊपर पीले कलर की बॉउंड्री है लाल कलर की दिवाल है।